जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है उसके बगल में बहुत सारे फ्रूट वैगरा रखे हुए हैं केले मौसमी वैगरा रखे नजर रहे हैं।

इसके ऊपर कुछ बाइक और सिटी रीक्शा और गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही है जिसके इसके बगल से भी--